यहां पर सामने एक स्टीकर बजरंगबली का--

यहां सामने एक बड़ा सा--

एक बड़ा सा ठापा है।

सामने एक बड़ा सा--

और वॉल पे कुछ--

यह एक वॉच टंगी है।

बहुत सारी लाइट्स लगी।

और साइड में एक--

लगी है और बहुत सारा--

लहंगा और ब्लैक कलर --

और सामने वॉल पे--

अ अंश ग्राउंड जैसा--

एक कैप पहने हुए--

बोर्ड लगा है जिस पे--